पेड़ भी दिख रहे है यहाँ पे और और कोई ऑफिस लग रहा है जिसका कलर ऑरेंज में है और एक चेयर भी रखी हुई दिख र--

और जो व्हाइट कलर का लोअर पहने हुए हैं। उस पे स्टेचू भी बना हुआ है और छाते भी लगे हुए हैं काफ़ी बड़े-बड़े कलरफुल --

और यहाँ पे काफी बड़ी बाउंड्री भी बनी हुई है और काफी सारे छोटे-छोटे पेड़ भी दिख रहे हैं लगे हुए कच कचरा भी डला है यहाँ पे।